यहाँ बड़े-बड़े घर दिख रहे हैं और सफ़ेद-सफ़ेद घर है यहाँ पे।

यह एक गोधलो का टाइम है।

मंदिर बहुत दूर में है और बढ़ा भी मंदिर है छोटा भी मंदिर है।

मंदिर बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने --

कुर्सी लगा है कुर्सी सब सफ़ेद है।

बेंच बहुत डिज़ाइनदार है और यहाँ बेंच पे ब्लू कलर है और सफ़ेद कलर है और एक पे बोर्ड लगा हैं ब्लैक बोर्ड और उसपे कुछ नोटिस --

और पेड़-पौधों छोटा-छोटा है जिसको बारीकी से कटा गया है और बड़ा-बड़ा भी पौधा है और एक आदमी इधर से जा भी रहा है।

जहाँ पे मोर है मोर अभी अपना पंख फेलाया नहीं है।

और यहाँ शर्ट के कपड़े रखे हुए है जो कपड़े को काट के दर्जी सिलाई कर के शर्ट पेंट बनाएंगे लड़को के लिए।

यहाँ एक शंकर भगवान के मंदिर जैसा लग रहा है यहाँ त्रिशूल बना हुआ है और इसमें ऊपर से गोल्डन कलर का लगा है और बीच में मैरून कलर का लगा है।

यहाँ पहाड़ जैसा है यहाँ पहाड़ अ पूरा कुहासा है और बर्फ भी लगा रहा है जमा है।

और घर बहुत सुंदर-सुंदर है बड़ा-बड़ा बिल्डिंग { है और देखने में भी शहर अच्छा लग रहा है और पानी लगा हुआ है पानी में बहुत ही कचरा हैं।}

यह एक ऑफिस या फिर कुछ ऐसा घर टाइप का है या कोई ऑफिस ही हैं।

यह घर का रूम है और यहाँ पे एक बेडशीट है और दो कम्बल है एक तकिया है एक और तकिया है एक तकिया का खोल निकल गया है आधा पे और ये रूम बहुत अच्छा है बेडशीट भी अच्छा है कलर आसमानी है इसका।

यहाँ एक मैरिज हॉल जैसा लग रहा है बहुत ही अच्छा से सजाया गया है साइड साइड में दो मोर बनाया गया है।

और ये छेद -छेद जैसा यहाँ आगे दो बाइक लगा हुआ है एक बाइक में पीछे हेलमेट है और यहाँ पेड़ भी है एक पेड़ सुख गया है।